जे तो समन्दर है। समन्दर में नाव चल रही है।

और जो हे उधर कुछ थोड़ी सी गंद्काय दिख रही है हो सकता इने मछली बनाई हो।

खेत में मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी है। यह तो भईया बहुत हरी-हरी घास है बहुत पहाड़ा पहाड़ी क्षेत्र हैं।

बहोत बढियाँ किताब हैं। सब तर तरह की किताब हैं। हर मॉडल की किताब हैं।

ये एक गार्डन है जहाँ पर मुर्गा मुर्गी पालन हो रहा है। गमले भी हैं।

जाली भी रखी है नीले कलर की। फूल भी हैं पीले। मुर्गी मुर्गे खेल रहें हैं और सामने एक दीवार भी है। वहाँ पर एक --

और इसमें स्टेच्यु भी है लड़की का और वो सूट पहने भी हैसड़ियाँ भी हैंलाल रंग की है।

यह तो फूल की दुकान है और यहाँ पर फूलों की माला भी है।

और आस-पास पेड़ हैं घास है पहाड़ियाँ हैं।

हरे-हरे फुल फुलवाड़ी दिख रही हैं पेड़ भी हैं छोटे बड़े घाँस --

यह पर्दे की दुकान है यहाँ पर्दे बिकते हैं।

यह एक नट बोल्ट की दुकान हैै जहाँ इसको बोल्ट बोलते हैै। इसको कही भी खीचा जा सकता हैं।

यहाँ पर लेडिज जैंट्स सब खाना खा रहे हैं बैठे हैं सज सजावट भी है।

जिन पे कलर है पीला है लाल है और आसपास में बड़े बड़े वृक्ष हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं।

छोटे हैं बड़े हैं बच्चों के हैंलेडिज हैं जैंट्स भी हैं सब तरह के कपड़े हैं यहाँ पर।

ये फूल माला की दुकान है और दुकानदार बेच रहे हैं बाकी लोग खरीदने आ रहे हैं।